एक नमक का पैकेट दिखा रहै। एक आदमी बाइक पे बैठे हुए है। सदर अस्पताल गोपालगंज में है। देखने मे ठीक लाग लहा है भाई।

महिला कुछ पीछे से भी आगे देख रहे और आगे से भी पीछे पीछे मे नदी है नजारा अच्छा दिख रहा हैबहुत बढ़िया से छट पूजा कर रहे है ये सब छठ महीना होता है बढ़िया।

दो आदमी है। एक आदमी पीछे की ओर अम हाथ कीये हुए है। ये सखा दिख रहा है।

नमो बुदाय जय भीम जय भारत लिखा हुआ हैं गोतम बुद्ध का मंदिर है ।

दुर्गा देवी मंदिर अरुण राय एक आदमी उधर शॉप के नीचे दतन कर रहे हैं एक टेंपू जा रहे उधर से एक बाइक आ रही एक साइकिल आ रही हैं।

बहुत बड़ीया लग रहा है पटरी देखने मे कहा का है ये मालूम नहीं। अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया सा है।

तीन आदमी है एक आदमी फोटो खीच रहे है अच्छा लग रहा है फोटो बढ़िया से घिच रहा है तीनो आदमी एक दिशा मे देख रहे है।

भारतीय स्टेट बैंक के शाखा पे है दो एक हूं बूढ़ा और एक बूढ़ी भी खड़ी हुई है। एक आदमी बैग लगा के पीछे से जा रहे है।

बच्चा पार्क मे घूम रहा है और आदमी सब बड़े बड़े पार्क मे घूम रहैं है। देखने मे बहुत सुंदर है ये पार्क ।

झूला झूल रहा है बढ़िया से पीछे की ओर झूला चले गए है बच्चा ठीक से देख रहा अ झूला झूल रहा है।

सैविंग है ये आदमी पीछे से केस कटा रहा है उसपे जो है एक रेजर रखा हुआ है। एक आदमी फोटो घीच रहा है आगे से--

शॉप है। इसमे ओर एक आदमी दिख रहा है। सारे बुक भी नजर मे आ रहै है। मगर नाम नहीं दिख रहा है। एक सीढ़ी लगाया हुआ है ओर अम नीचे मे छोटा टेबल जो होता है वो है।

यहा पे नव है दो नव है और चार आदमी देख रहे है। अ तीन अ चार आदमी साइड से है और बगल मे पानी का पनिया जहाज है। तीन जहाज पनिया जहाज दो जहाज साइड से है।